कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे है एक लेडी बैठी हुई नज़र आ रही है।

ऊपर की ओर लाइटे लगी हुई है दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और भी चेयर वगेरा रखे हुई है उसके हाथ में एक मशीन है जिसकी तार दिखाई दे रही है।

फ्लावर्स डिज़ाइन भी दिया गया हैं।

चौराहे जैसे नज़र आ रहे हैं जो चारो ओर से दिवार घिरा हुआ है बीच में कुछ बना हुआ है।

और बरामदे पे ही बैठे हुए है।

दीवारों पे मिरर लगा हुआ नज़र आ रहा है विंडोज दिखाई दे रहीं हैं।